काफी अच्छा डेको डेकोरेट किया गया है और ये यहां पे अह बीज बी_जे_पी का भी बैनर लगा--

ये गमछा भी रखा हुआ है बगल में रेड कलर का आदमी उसके बगल में खा रहा है।

और इसे काफी बढ़िया सा बढ़िया से अ आ में यह किया जाता है और बच्चों को पढ़ाया जाता है ताकि बच्चे आगे चल के --

अं अं उँ बहोत जॉब करे या काम करे उसके लायक बनाया जाता है स्कूल में अच्छी पढ़ाई होती है।

काटा जाएगा और बहुत सारे बच्चियाँ बैठी भी हुई हैं और स्कूल ड्रेस लेने के लिए और यहाँ पे एक मैडम --

ये राजकीय कच्चा उच्च विद्यालय --

और ये काफी बढ़िया लग रहा है उम यहां पे पूजा उम किया जाता है और ये--

इससे ईंट है उससे मकान बनाया जाता है और पीछे पेड़-पौधे भी दिख रहे है और एक माइक भी टांगा हुआ है ये मस्जिद है अम्म और इस मस्जिद में नमाज़ पढ़ी जा --